जैसा कि आप इस ई पिक में देख रहे हैं सामने की ओर हाल में कुछ टेबल्स रखे हुए हैं और --

बड़ी सुंदर बिल्डिंग दिख रही है और फिर साम नीचे की ओर बहुत ही सुंदर ग्राउंड बना हुआ है।

जैसा कि आप इस पिक में देख रहे है सामने की ओर बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा हैं।